और नीचे कुछ पैकेट पड़े है नमकीन के।

कुछ लड़कियां खड़ी है कुछ लड़के भी खड़े हैं।

यहां पर सामने एक बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है घर के आगे दो मोटरसाइकिल है बीच में एक आदमी खड़ा है घर के आगे एक बहुत ही बड़ा --

पेड़ लगा हुआ है और ऊपर तार लगी हुई है ऊपर बिजली वाले तार निकल रहे हैं और --

इस फोटो के अंदर सामने एक बहोत बड़ी मस्जिद बनी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है बस है बस का कलर है हल गहरा ग्रीन ।

बस के पीछे बहोत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं बस के इधर साइड एक आदमी खड़ा है जिसके --

रेड कलर के टी शर्ट पहनी हुई है गले में अह सही कलर का रुमाल है और चड्ढा पहना हुआ है।

एक नीचे बहोत सारी मोटर साइकिल खड़ा है एक आदमी खड़ा और यहां बिजली वाले तार जा रहे ऊपर से --

पत्थर से हाथी बनाया हुआ है हाथी के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा है और सामने बहोत सारे आदमी खड़े है।

घर के अंदर दो दरवाजे लगे हुए हैं बीच में एक आदमी बैठ है और सामने ए_सी लगी हुईं हैं पंखे लगे हुए हैं।

है धरी बिछाई हुई है इधर एक बहुत बड़ा दरवाजा है जहां पर पर्दे लगे हुए हैं।

चेहरे पे सफेद मास्क शर्ट के ऊपर प्रेस कर रहा है पीछे लाइट वाला बोर्ड लगा हुआ है।

दर बहोत बड़ा दरवाजा पोल बनी हुई है नीचे बहोत सारे लोग खड़े हैं छोटा सा बच्चा है।

यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हैं कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं सामने दीवार के पास एक वाइट कलर का बोर्ड लग --